काहा कार को फूलों से सजे हैं हरे पीले हैं यहां पर अ ऐ आ आना जाना कर रहे है और यहां पर पेड़ है आसमान है और कच्ची सड़क है और यहाँ पर --

यहां पे यहां पर एक बाजू में बहुत बड़ा घ घर है घर के बाजू में जमीन है हरे हरे पे--

बोर्ड लगे हुए है और ऊपर खिड़की की है नीचे टाइल्स लगी हुई है और बहुत सारे बोर्ड लगे हुए है।

पीले फ फू हरे हरे फूल है और एक लड़का है वो माताजी की पूजा कर रहा है और मंडप डाला हुआ है।